इस चित्र में हमें एक कॉलोनी नजर आ रही है।

एक मस्जिददिखाई दे रही है।

बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं।

वो नीला रंग दिखाई दे रहा है।

काफी सारे लोग खड़े हैं ।

एक टेंट दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक बैनर लगा है।

बाराती ने नीला कुर्ता पेहना हुआ है।

एक पुराना घर दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक--

सामने हमें दो बच्चे नजर आ रहे है।

नारंगी शर्ट पहनी हुई है।

सामने ये पॉपकॉर्न की दुकान बनी है।

इस चित्र में हमें कुछ घर--

इस चित्र में हमे एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक साइकिल दिख रही हैं।

जिसका रंग सफेद है।

पेड़ों का रंग हरा है।

कुछ तारनजर आ रहे हैं।

काफी सारी लाइटें लगी हुई है।

जिसने जामुनी शर्ट पहनी है।

आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं।

फ्रिज मेंकोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं।

जिनका रंग काला है।

ये एक चर्च का फोटो है सभी आदमी ने चोगा पहना हुआ है।

फूलदिखाई दे रहे हैं।

पीछे जीजस की मूर्ति लगी है।